सामने आधार कार्ड वगैरा लिखा हुआ है अल्बेस्टर का दुकान है।

जो कि फोटो ले रहा है सामने एक मोबाइल रखा हुआ है।

पानी बहुत सारा है एक बहुत बड़ा लाइट है।

ये कोई छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

एक कपड़े का दुकान है जिसमें की सामने पोस्टर लगा जिसमें पुनम लिखा हुआ है।

सामने एक पंखा दिख रहा है और पिला कलर का एक गेट है।

एक बच्चा जो के लिए येलो कलर का टी सर्ट और हल्का येलो कलर का पेंट और दो चप्पल पहना हुआ है सामने एक लड़की बैठी हुई --

पीला कलर से और शीशा लगा हुआ है उसके अंदर आदमी हैं।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

इसमें एक औरत दो बच्चे हैं जो कि तीनों तीन मैट में लेटे हुए हैं।

बच्ची हैं जो की पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और बहोत बड़ा ग्राउंड फ्लोर है।

और इसमे सिडियाँ थोड़ा सा मिट्टी रखा हुआ है।

और इसमें कंप्यूटर दिख रहा है। मॉनिटर माउस कीबोर्ड एंड वायर दिख रहा--

ऐसे ही चटनी भी बाउल में है और एक ग्लास है।

कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप नजर आ रहा है।

इसमें की बहुत कुछ सामान रखे हुए हैं दो चार चेयर है।